ये एक बस स्टेशन है जिसमें बहुत सारे बस लगे हुए हैं।

पर स्टील का डब्बा रखा हुआ है और कांच का रखा हुआ है।

पूरा ग्लास कवरिंग है यह और नीचे का एक रैक है।

और एक स्क्रिप्ट पेज लिखी हुई है जिसमें सॉन्ग है।

ऊपर से बहुत सारे तार लाइन वाले तार गए हुए हैं।

अंदर में एक व्यक्ति है।

ये एक सुपर मार्केट है जिसमें बहोत सारे खाने का समान है।

वो दुकान है एक दो तल्ला है एक तल्ला है।

इसमें लिखा हुआ है पैंथर पैंथर कंस्ट्रक्शन भवानी का भविष्य अब यहां है।

बगल मे एक बड़ा सा स्टील का बोर्ड लगाया हुआ है।

किनारे गेट की ओर बहोत सारे बैलून लगे हुए हैं जिसमें पेंसिल भी तीन लगाया हुआ है।

इसमें फूल भी लगाया गया है।

यह एक होटल का सीन है जिसमें ब्लू पर्पल ऑरेंज और व्हाइट कलर से किया हुआ है।